ये एक सीमेंट की शॉप है।

ये एक ग्राउंड नजर आ रहा है।

यहाँ पर दो बल लगी हुई हैं।

यहां पर ए_सी लगा हुआ है।

ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्रीज लीख फिजिकल्स है।

ये एक नायरा पेट्रोल पंप है।

यहां पर लेडिस डांस कर रही है।

भीड़ लगी है बच्चों के लिए खेलने के --

ये यहां पर मच्छी काट रहे हैं।

यहां पर बल्द भी खड़ा है।

ये डिप्टी कमिश्नर फाजिलका का--